और जो अ शॉप का अ नाम है वो हेवल गैलेक्सी हैं।

ये ग्रीन कलर की जैकेट डाली हुई है व्हाइट कलर की टोपी डाली हुई है पीछे कभी काफी गाड़ियां ट्रक है।

जेंटल क्लीनर एक फैन लगा हुआ है एक बाल लगी बाल पर अ एक दीवार पर ग्रे कलर का ग्रीन कलर किया गया है।